एक टेलीविजन लगा हुआ है घड़ी भी लगी हुई है ऊपर और नीले टंकी पानी की बोतल रखी हुई है।

खाली जगह है काफी मिट्टी बहोत ही सुंदर भूरे रंग की मिट्टी है बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं घना कोहरा छा रखा है।

भूरे रंग के पर्दे लगे भूरे पीले रंग के परदे लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के भी एक कपड़ा लगा हुआ है।

मन-मन पूर्ण पुरम गोल्डन गोल्ड लोन का बोर्ड लगा हुआ है एक्सिस बैंक का लगा हुआ है आंध्र बैंक --

दृश्य एक पेट्रोल का है जहां ट्रक खड़ा हुआ है ट्रक का रंग नीला और सफेद है।

लकड़ी की शेल्फ बनी हुईं हैं लाइट जल रही हैं।

पर्पल कलर का काउंटर बना हुआ है एक ए_सी लगा हुआ है लाइट्स लगी हुई हैं फ्रिज हैं।

ये दृश्य एक मंदिर का है मंदिर श्री गणेश जी का है बाहर एक कारपेट लगा हुआ है।

स्कूटी खड़ी हुई है एक इंसान बैठा हुआ है और लाल केसरिया पीले रंग के कुछ--

आसमान में बादल दिखाई दे रहे है लोग खड़े हुए है छोटी छोटी घास लगी हुई है।